दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहां पर देखिए ये एक बहोत बड़ा सा मैदान है जिसमें की बीच में दो --

कुछ बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ सीढ़ियां बनी दिख रही हैं। सीढ़ियों पर लड़के खड़े हुए दिख रहे हैं और भी लड़के खड़े हुए हैं।

कि इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये स्टेट बैंक ए.टी.एम. है। यहाँ पर अंदर की तरफ इसमें शीशे --

यहाँ पर बाहर की तरफ जमीन में कुछ कागज फटे हुए पड़े हैं।

और यहाँ पर बहुत सारी साइकलें और बाइक खड़ी हुई दिख रही है। एक बिजली का खंभा भी लगा है। लाइट भी जल रही है। यहाँ पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह एक रेस्टोरेंट या कैफे का दृश्य है यहाँ पर देखिए यह एक मेज रखी है। मेज के ऊपर --

दृश्य पर हम देख पा रहे हैं। ये एक जिम का दृश्य है। यहाँ पर देखिये एक्सरसाइज की मशीन लगी हुई है। बहुत सारी लाइटे भी लगी हैं।

ये कुछ लोग भी दिख रहे हैं किनारे की तरफ एक गुमटी रक्खी हुई है गुमटी पर तिरपाल चड़ा हुआ है और सामने एक चौड़ी सी रास्ता दिख रही है।

दिख रही है। दो मजदूर दिख रहे हैं जो कि इसमें कुछ ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक बड़ा सा हॉल बना है। । सामने की तरफ देखिए ये केबिन बने हुए दिख रहे हैं और बोहोत सारी लाइटें भी जल रही हैं। दीवार में ए.सी. भी लगे हुए हैं।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बस खड़ी है। बस में पर्दे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बस के ऊपर वाई.बी.एस लिखा हुआ है और यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ मकान बने हुए दिख रहे हैं।

अ कि इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एक बोहोत बड़ा सा स्टेज बना वा है। स्टेज के ऊपर कालीन बिछी वी है। लाइटें रखी हुई दिखाई दे रहीं है। इस --

यहाँ पर देखिए केक के रंग लाल काले और पीले दिखाई दे रहे हैं।

लोहे के रॉड लगे हुए हैं। लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी लोहे के --

दृश्य में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एस.बी.आई बैंक है और यहाँ पर ये एक दुकान बनी हुई है। जिसमें एस.बी.आई बैंक ए.टी.एम है।